सामने एक स्टेज दिखाई दे रही है स्टेज बहोत ही बड़ी दिखाई दे रही है।

सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पर लाइटें लगी हुईं दिखाई दे रही हैं।